--बने हुए हैं और साइड में एक व्यक्ति खड़ा दिख रहा है और साइड पे स्टील का पाइप लगे हुए हैं और ये दिन का समय है आसमान नीला दिख--

आइड साइड में कुछ पाने पेंचिस हैबिखरे हुए दिखाई दे रहे है और उसका बोनट --

और वहाँ कुछ हरे मे हरी मेटी बनी हुई दिखाई दे रही है दीवाल के ऊपर और वहाँ से कुछ सूरज नज़र आ रहा है।